क्योंकि कुछ हरियाली पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जोकि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ --

यहाँ पे देखा जाये तो हमारे भाई साहब लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं जो की पंडाल बगल में है और यहाँ पे हरा भरा कुछ पौधा भी जो भी है।

यह कुर्सी जो है पूरा येल्लो मे है और इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बोला जाए इसके बारे मे ऊपर लाइटस लगी है रूम पे जो की बहुत ही अच्छा और नीला आसमान की तरह रंग किया गया है और --

और यहाँ राजा -महराजा के तरह वस्त्र धारण किए हुए हमारे जो भी बुजुर्ग हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे है सजावटे भी बहुत अच्छी हैं।

यहाँ पे देखा जाए तो कोई स्टेडियम ही लग रहा है जिसमें मंच भी है काफी सारे खिलाड़ी खेले जा रहे हैं और यहाँ पाय और यहाँ पे काफी सरे लोग भी हैं जो अँधेरे में लाइट्स की वजह से उजाला दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पे देखा जाए तो एक नंबर का यह व्यवस्था बनाया गया है जो भी व्यवस्था होगा बहुत ही अच्छा हैं व्यवस्था --

इसको देखा जाए तो किसी झंडे को देखते हुए ऐसा लगता है किसी कार्यालय का यह पिक्चर हैं ऊपर आसमान है और बगल में देखा जाए तो कोई पौधा ही हैं ।

इसे दृश्य को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे यह किसी रस्ता हम्म रास्ते राहगीर के चलते हुवे समय फोटो लिया गया है।